इस मकान में अनेक कमरे हैं और अनेक कमरे में अनेक खिडकियाँ हैं और सभी खिडकियों पर एक खुबसूरत से डिजाईन बनाई गयी है और यह मकान सफ़ेद चुना से पेंट किया गया है।

काला अंगूर एवं हरा अंगूर तथा बेदाना संतरा सेब इत्यादी फल नजर आ रहें हैं।

यहाँ आई.एस.जी. एलेवेनथ ट्वेल्थ जे.ई.ई. नीट एडवांस मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई कराई जाती है।

यह पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पी.ऐन.बी बैंक है इस बैंक से पैसे निकाले या जमा किया जाता है यह मुजफ्फरपुर रोड मुजफ्फरपुर की ब्रांच यानी शाखा है ।